चेयर्स का बहुत के एक ग्रुप भी रखा हुआ है और यहां पर मुझे एक लेदर भी दिख रही है जोकि सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए यूज होती है।

और सामने जो यह लड़का बैठा है ये यहां का दुकानदार है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और सनग्लासेस भी लगाए हैं।

इसकी शर्ट का कलर इतना पर्पल ब्लू है की आंखों में चुभ रहा है साथ ही पीछे की तरफ मुझे नोट बुक्स भी दिखाई दे रही है।

सभी की कलर अलग अलग है जैसे लाल हरा नीला बैंगनी और यह कोई नृत्य कला प्रदर्शित कर रही है।

जिसमें एक गायका और एक गायिका दोनों मंच पे खड़े हैं।

जो कि काउंटर पर कुछ ना कुछ संपर्क कर रहे हैं।

पानी के किनारे कुछ लोग भी मुझे साफ खड़े खड़े दिखाई दे रहे है जोकि शायद यहां पे मनोरंजन के लिए आए है।

यहां पर कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ हैं।

साथ ही यहां पर मेन डोअर के ऊपर ब्लू कलर का एक--

तीनों ही टेबल्स का कलर ब्लू है यहां पे बहोत सारी विंडोज भी मुझे दिखाई दे रही जो कि घर के पीछे की है।